यहां नींबू और कुछ मिर्चें भी दिखाई दे रही हैं।

यहां दो खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

यहां कई सारे हरे भरे घास फूस और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां कई सारे सामाने नजर आ रही है।

यह चित्र किसी राखी के दुकान का दिखाई दे रहा है जहां कहीं सारी राखियां दिखाई दे रही है।

यहां एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

भारत का नक्शा भी दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां कुछ गाड़ियों के औजारे दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक नीले रंग की चार पहिए वाली गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

इसके अलावा पीछे की तरफ कुछ और बेंचे भी दिखाई दे रही है।

यहां एक गुलाबी रंग की इमारत भी दिखाई दे रही है।

यह चित्र किसी गमले के दुकान का दिखाई दे रहा है जहां कई सारे गमले रखे दिखाई दे रहे हैं।

सारे गमले रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं।